वो भी ऑरेंज कलर का घड़ा वाला मंडप है उसमें बहोत सारे फूल है रंग बिरंगे लाल गुलाबी पियर हरियर से सजाया हुआ है।

यहां पे एक हॉल का दृश्य दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर एक स्टेज है स्टेज के ऊपर एक लड़का खड़ा है।

उसके नीचे दो कार लगाए हुए हैं उसके बगल में दो स्कूटी लगाए हुए हैं।

यहां पर एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारे बैलून से सजाया गया है।

यहां पर एक बड़ा सा हॉल का दृश्य दिख रहा है जिसमें बहौत सारे टेबल्स लगाए हुए हैं।

और लाइट जल रहा है इस रूम में बहुत सारे और पंखा चल रहा हैं।

यहां पर एक झरना का दृश्य दिख रहा है जिसमें नदी के बीचों बीच एक आदमी पत्थल पे बैठा हुआ है।

उसको बच्चे लोग फांग रहे हैं उसे सर्किल में होकर और अगल बगल बहुत सारे घास हैं ।

और बच्चे का टी शर्ट का कलर येलो है नीचे रेड पेन है जूता मोजा पहना है।

यहां पर एक बड़ा सा मैदान देख रहा है जिसमें पहाड़े हैं छोटे छोटे वो भी पत्थल का बहोत सारे इधर अगल बगल सूखे सूखे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं छोटा छोटा प्लांट है।

उसके ऊपर मिक्सी रखा हुआ है जार का डब्बा रखा हुआ है।

कुर्सी है कुर्सी ब्लैक कलर का है टेबल ब्राउन कलर का है बगल में बहुत सारे फ्रेम्स लगाए हुए हैं।

सामने भी एक पोस्टर टांगा हुआ है उस घर पे करकट का छज्जा डाला हुआ है।

यहां पर गौशाला का दृश्य देख रहा है जिसपे दो गाय--

और एक गाय व्हाइट है एक ब्राउंड कलर का गाय है नीचे बहुत सारे जमीन में कंकर से ये सब है और बगल में झाला लगाया हुआ उसके बगल में बहोत सारे घर बनाए हुए हैं।

और नीचे बहोत सारे घास भी पत्थल है पत्थल पे लोग बैठे हुए हैं।

एक आदमीन बाहर पर बैठा हुआ है चेयर पे उसके बगल में एक दीवाल है।